अपने घर अपने घर के बगीचे में फूलों को पौधा पानी देता एक बालक जो कि पाइप से फटा रहा है जो बालक वो बालक लाल टी-शर्ट और ऑरेंज कलर के पेण्ट पहने हुए है साथ में चप्पल भी पहने हुए है।

एक शादी समारोह मैं गए हुए दो व्यक्ति जोकि शादी के गेट पे जहाँ पे शादी के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर के फोटो खिंचवाने की मुद्रा में खड़े हैं।

इसपे लोग अपनी स अपना इस पे लोग चढ़ करके इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म पर तक जाने के लिए अपने अपने नज़दीकी गाड़ी को पकड़ें --

यह इसके बाहरी अ परिसर में एक बड़ा सा पार्क है जो की तरह-तरह के फूलों को और तरह-तरह के रंग-बिरंगी घासों का संग्रह किए संग्रहालय है।

जिसमें बोहोत सारे छड़ एक दूसरे से जोड़े हुए हैं जुड़े हुए हैं जो कि छत की मजबूती का काम करेंगे।

एक नुक्कड़ पे चाय का दुकान है जिसका नाम आर.के. कॉफ़ी स्टॉल है।